पर्पल रंग की दीवारें नजर आ रही हैं।

सफेद रंग की लाइट नजर आ रही है काले लाले रंग का पोस्टर नजर आ रहा है।

सफेद रंग के टोपी भी लगाई हुई है।

हरे रंग के झाड़ है ब्रिज बना हुआ है सफेद रंग का जाली लगी हुई है काले रंग की--